और लोगुन पलंग लगाके भार बैठे हुए हैं और कुछ लोग नीचे भी बैठे हुए हैं। मंदिर के भार एक घर बना हुआ है।

झरना बह बह रहा है। उसमें कुछ लोग नहा भी रहे हैं और जंगल के साइड में एक बच्चा मस बच्चे उन खेल रहे हैं।

जैसे कि अपन यहां देख पा रहे हैं कि यहां पर एक घर है उसके बगल--

जैसे कि अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यह एक खा रूम है यह अनाथालय का रूम है और इसके अंदर --

मैच को देख सकते हैं अपन और एक उसमें फूल-पौधे भी लगे हुए हैं और फूल --

और एक तगारी भी रखी हुई है और किताब के शॉप में फुग्गे भी लगे हुए हैं और यहाँ पर पेन के गुच्छे भी टंगे हुए हैं।

ये सामने एक सामने एक बिल्डिंग है सफेद कलर की और इसके साइड ( में एक --

और दो किताबों की दुकान लगी हुई हैं।